बेचने के लिए बैठे हुए हैं यहां पे --

मैगी आदि कुरकुरे वहे पर रखे हुए है।

बहुत सारे पेड़ पौधे नजर आ रहें हैं।

लोग पेट्रोल डीजल आदि के लिए आते है।

मशीने लगे हुए है फिटनेस को लेके लोग --

ये एक ऑटो रिक्शा शोरूम है यहाँ पे ऑटो रिक्शा --

ये कर रहे हैं ये एक जिम प्रकार का एक्सरसाइज --